पर्दे के कोने में कुछ लाईट भी दिख रहा है यह कमरे का दीवार का रंग सफेद कलर का है।

बिल्डिंग के कोने में एक बालकनी भी नजर आ रहा --

साइड में एक सीढ़ी भी नजर आ रहा है।

दीवार का रंग पर्पल और सफेद कलर का है दीवार में एक लाल कलर का पोस्टर भी चिपकाया हुआ है।

यह पिक्चर का नजारा भी काफी खूबसूरत है।

में एक ग्रीन कलर का चटनी भी दिख रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक कमरा नजर आ रहा है इस कमरे में दो बिस्तर में रखा हुआ है एक बिस्तर के ऊपर एक कपड़ा भी रखा हुआ है।

इस फोटो में मुझे एक बड़ा सा बिल्डिंग नजर आ रहा है यह बिल्डिंग का आधा पार्ट कांच से बना हुआ है।

है गच्ची के सामने बहुत सारा पत्थर भी रखा हुआ है।

थोड़ी सी दूर में एक घोड़ा भी नजर आ रहा है घोड़ा के उसे पार में बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ भी दिख रहा है।

बहुत सारा इंसान इस स्टेज के नीचे में खड़े होकर है।

वह इंसान सफेद कलर का शर्ट पहना हुआ है जमीन पर एक ब्लू कलर का बकेट भी नजर आ रहा है।

इस फोटो में मुझे एक ग्रीन कलर का टेंट दिख रहा है सामने दो काले कलर के चेयर भी रखा हुआ--

घर के सामने बहुत सारा पेड़ भी निकला हुआ है।

कुछ इंसान अपने हाथ में छाता पकड़ा हुआ है।

कोने में बहुत सारे पेड़ भी नजर आ रहा है पेड़ के सामने एक बाइक और बाइसिकल भी रखा हुआ है।

इस तस्वीर में मुझे एक पानी का फाउंटेन दिख रहा है नीचे बहुत सारा लाइट भी लगा हुआ है।